मेरे प्यारे परिवारजनों नमस्कार
मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को देशवासियों की सफलता को उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला है
इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र सन्देशजो मुझे मिले हैं वो दो विषयों पर बहुत अधिक है
पहला विषय है चंद्रयान3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन
देश के हर हिस्से से समाज के हर वर्ग से हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं
जब चंद्रयान3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलगअलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पलपल के साक्षी बन रहे थे
इसरो के यूट्यूब लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा अपने आप में ही एक रेकॉर्ड है
इससे पता चलता है कि चंद्रयान3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है
चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कॉम्पिटिशन भी चल रहा है प्रश्नस्पर्धा और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान3 महाक्विज
MyGov पोर्टल पर हो रहे इस कॉम्पिटिशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं
MyGov की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है
मैं तो आपसे भी कहूँगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो अब देर मत करिए अभी इसमें छः दिन और बचे हैं
इस क्विज में जरुर हिस्सा लीजिये
मेरे परिवारजनों चंद्रयान3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया
भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है
लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं
भारत ने इस सम्मित में अफ्रीकान यूनियन को G20में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है
आपको ध्यान होगा जब भारत बहुत समृद्ध था उस ज़माने में हमारे देश में और दुनिया मेंसिल्क राउटे की बहुत चर्चा होती थी
ये सिल्क राउटे व्यापारकारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था
अब आधुनिक ज़माने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है
ये है इंडियामिडल ईस्चुरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर
ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था
साथियो G20 के दौरान जिस तरह भारत की युवाशक्ति इस आयोजन से जुड़ी उसकी आज विशेष चर्चा आवश्यक है
सालभर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए
अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम
इस प्रोग्राम के माध्यम से देशभर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एकदूसरे से जुड़ेंगे
इसमें आईआईटीएस आईआईएमएस निट्स और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे
मैं चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितम्बर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरुर देखिएगा इससे जरुर जुड़िएगा
भारत के भविष्य में युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं
मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा
मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से संवाद का इंतजार है
मेरे परिवारजनों आज से दो दिन बाद 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस है
पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैरसपाटे के तौर पर देखते हैं लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलूरोजगार से जुड़ा है
कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वोटूरिज्म सेक्टर ही है
टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए goodwillउसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है
बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है
साथियो G20 में एक लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए
वो यहाँ की विविधता अलगअलग परम्पराएं भांतिभांति का खानपान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए
यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा
आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और इनकी संख्या लगातार बढती जा रही है
कुछ ही दिन पहले शान्तिनिकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसड़ा मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है
मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ
मुझे 2018 में शान्तिनिकेतन की यात्रा का सौभाग्य मिला था
शान्तिनिकेतन से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का जुड़ाव रहा है
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शान्तिनिकेतन का मोट्टो संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक से लिया था
वह श्लोक है
यत्र विश्वम भवत्येक नीडम्
अर्थात जहाँ एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है
कर्नाटक के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है उन्हें13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है
इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है
भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है
भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादासेज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मान्यता मिले
मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें
आप अलगअलग राज्यों की संस्कृति को समझें हेरिटेज साइट्स को देखें
इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे
मेरे परिवारजनों भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है
दुनियाभर के लोगों का इनसे लगाव दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है
एक प्यारी सी बिटिया द्वारा की गई एक प्रस्तुति उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाता हूँ
एमकेबी ईपी 105 ऑडियो बाइट 1
इसे सुनकर आप भी हैरान हो गए न कितनी मधुर आवाज है और हर शब्द में जो भाव झलकते हैं ईश्वर के प्रति इनका लगाव हम अनुभव कर सकते हैं
अगर मैं ये बताऊँ कि ये सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है तो शायद आप और अधिक हैरान होंगे
इस बिटिया का नाम कैसमी है
21 साल की कैसमी इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब छाई हुई है
जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई है लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं उसकी भारतीय संगीत में ये रूचि बहुत ही इंस्पायरिंग है
कैसमी जन्म से ही देख नहीं पाती है लेकिन ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई
Music और क्रिएटिविटी को लेकर उनका पैशन कुछ ऐसा था कि बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया
अफ्रीकान ड्रमिंग की शुरुआत तो उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही कर दी थी
भारतीय संगीत से उनका परिचय 56 साल पहले ही हुआ
भारत के संगीत ने उनको इतना मोह लियाइतना मोह लिया कि वो इसमें पूरी तरह से रम गई
उन्होंने तबला बजाना भी सीखा है
सबसे इंस्पायरिंग बात तो यह है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी हैं
संस्कृत हिंदी मलयालम तमिल कन्नड़ या फिर असमी बंगाली मराठी उर्दू उन्होंने इन सबमें अपने सुर साधे हैं
आप कल्पना कर सकते हैं किसी को दूसरी अनजान भाषा की दोतीन लाइने बोलनी पड़ जाए तो कितनी मुश्किल आती है लेकिन कैसमी के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है
आप सभी के लिए मैं यहाँ कन्नड़ा में गाए उनके एक गीत को शेयर कर रहा हूँ
एमकेबी ईपी 105 ऑडियो बाइट 2
भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं ह्रदय से सराहना करता हूँ
उनका यह प्रयास हर भारतीय को अभिभूत करने वाला है
मेरे परिवारजनों हमारे देश में शिक्षा को हमेशा एक सेवा के रूप में देखा जाता है
मुझे उत्तराखंड के कुछ ऐसे युवाओं के बारे में पता चला है जो इसी भावना के साथ बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं
नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है
इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुँच रही हैं और इतना ही नहीं ये सेवा बिल्कुल निशुल्क है
अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गाँवों को कोवर किया गया है
बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं
इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है कि दूरदराज के गाँवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएँ कहानियाँ और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले
ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खूब भा रही है
साथियो मुझे हैदराबाद में लाइब्रेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है
यहाँ सातवीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो कमाल कर दिया है
आपको यह जानकार आश्चर्य हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए एकदो नहीं बल्कि सातसात लाइब्रेरी चला रही है
आकर्षणा को दो साल पहले इसकी प्रेरणा तब मिली जब वो अपने मातापिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी
उसके पिता जरूरतमंदों की मदद के सिलसिले में वहाँ गए थे
बच्चों ने वहाँ उनसे कलरिंग बुक्स की माँग की और यही बात इस प्यारीसी गुड़िया को इतनी छू गई कि उसने अलगअलग तरह की किताबें जुटाने की ठान ली
उसने अपने आसपड़ोस के घरों रिश्तेदारों और साथियों से किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आपको यह जानकार खुशी होगी कि पहली लाइब्रेरी उसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए खोली गई
जरूरतमंद बच्चों के लिए अलगअलग जगहों पर इस बिटिया ने अब तक जो सात लाइब्रेरी खोली हैं उनमें अब करीब 6 हजार किताबें उपलब्ध हैं
छोटीसी आकर्षणा जिस तरह बच्चों का भविष्य संवारने का बड़ा काम कर रही है वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है
साथियो ये बात सही है कि आज का दौर डिजिटल टेक्नोलॉजी और ईबुक्स का है लेकिन फिर भी किताबें हमारे जीवन में हमेशा एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाती है
इसलिए हमें बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए
मेरे परिवारजनों हमारे शास्त्रों में कहा गया है
जीवेषु करुणा चापि मैत्री तेषु विधीयताम्
अर्थात् जीवों पर करुणा कीजिए और उन्हें अपना मित्र बनाइए
हमारे तो ज्यादातर देवीदेवताओं की सवारी ही पशुपक्षीहैं
बहुत से लोग मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं लेकिन जो जीवजंतु उनकी सवारी होते हैं उस तरफ़ उतना ध्यान नहीं देते
ये जीवजंतु हमारी आस्था के केंद्र में तो रहने ही चाहिए हमें इनका हर संभव संरक्षण भी करना चाहिए
बीते कुछ वर्षों में देश में शेर बाघ तेंदुआ और हाथियों की संख्या में उत्साहवर्धक बढ़ोत्तरी देखी गई है
कई और प्रयास भी निरंतर जारी हैं ताकि इस धरती पर रह रहे दूसरे जीवजंतुओं को बचाया जा सके
ऐसा ही एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है
यहाँ सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है उनकी टीम का नाम है कोबरा
ये ख़तरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक साँपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है
इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं
सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30 हजार से ज्यादा जहरीले साँपों का जीवन बचाया है
इस प्रयास से जहाँ लोगों का खतरा दूर हुआ है वहीँ प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है
ये टीम अन्य बीमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है
साथियो तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एमराजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं
वो पिछले 2530 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं
खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर हैं
वहीँ पक्षियों के भोजन पानी स्वास्थ्य जैसी हर जरुरत का पूरा ध्यान रखते हैं
इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं
साथियो लोगों को नेक नीयत से ऐसा काम करते देखकर वाकई बहुत सुकून मिलता है काफी खुशी होती है
अगर आपको भी ऐसे ही कुछ अनूठे प्रयासों के बारे में जानकारी मिले तो उन्हें जरुर शेयर कीजिए
मेरे प्यारे परिवारजनों आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए हर नागरिक का कर्तव्यकाल भी है
अपने कर्तव्य निभाते हुए ही हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं
कर्तव्य की भावना हम सभी को एक सूत्र में पिरोती है
यूपीके सम्भल में देश ने कर्तव्य भावना की एक ऐसी मिसाल देखी है जिसे मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ
आप सोचिए 70 से ज्यादा गाँव हों हजारों की आबादी हो और सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाएँ जुट जाएँ ऐसा कम ही होता है लेकिन सम्भल के लोगों ने ये करके दिखाया
इन लोगों ने मिलकर जनभागीदारी और सामूहिकता की बहुत ही शानदार मिसाल कायम की है
दरअसल इस क्षेत्र में दशकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी
अमरोहा से शुरू होकर सम्भल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी
इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था
समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई
नदी को माँ मानने वाले हमारे देश में सम्भल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया
पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया
ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया
आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरोद्धार कर चुके थे
जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहां के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई
यहां के किसानों के लिए यह खुशी का एक बड़ा मौका बनकर आया है
लोगों ने नदी के किनारे बांस के 10 हजार से भी अधिक पौधे भी लगाए हैं ताकि इसके किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहें
नदी के पानी में तीस हजार से अधिक गम्बूसिया मछलियों को भी छोड़ा गया है ताकि मच्छर न पनपें
साथियो सोत नदी का उदाहरण हमें बताता है कि अगर हम ठान लें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं
आप भी कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने आसपास ऐसे बहुत से बदलावों का माध्यम बन सकते हैं
मेरे परिवारजनों जब इरादे अटल हों और कुछ सीखने की लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता है
पश्चिम बंगाल की श्रीमती शकुंतला सरदार ने इस बात को बिल्कुल सही साबित करके दिखाया है
आज वो कई दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं
शकुंतला जी जंगल महल के शातनाला गांव की रहने वाली हैं
लंबे समय तक उनका परिवार हर रोज मजदूरी करके अपना पेट पालता था
उनके परिवार के लिए गुजरबसर भी मुश्किल थी
फिर उन्होंने एक नए रास्ते पर चलने का फैसला किया और सफलता हासिल कर सबको हैरान कर दिया
आप ये जरुर जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कमाल कैसे किया इसका जवाब है एक सिलाई मशीन
एक सिलाई मशीन के जरिए उन्होंने साल की पत्तियों पर खूबसूरत डिजाइन बनाना शुरू किया
उनके इस हुनर ने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया
उनके बनाए इस अद्भुत क्राफ्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है
शकुंतला जी के इस हुनर ने न सिर्फ उनका बल्कि साल की पत्तियों को जमा करने वाले कई लोगों का जीवन भी बदल दिया है
अब वो कई महिलाओं को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रही हैं
आप कल्पना कर सकते हैं एक परिवार जो कभी मजदूरी पर निर्भर था अब खुद दूसरों को रोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है
उन्होंने रोज की मजदूरी पर निर्भर रहने वाले अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है
इससे उनके परिवार को अन्य चीजों पर भी फोकस करने का अवसर मिला है
एक बात और हुई है जैसे ही शकुंतला जी की स्थिति कुछ ठीक हुई उन्होंने बचत करना भी शुरू कर दिया है
अब वो जीवन बीमा योजनाओं में निवेश करने लगी हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो
शकुंतला जी के जज्बे के लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है
भारत के लोग ऐसी ही प्रतिभा से भरे होते हैं आप उन्हें अवसर दीजिए और देखिए वे क्याक्या कमाल कर दिखाते हैं
मेरे परिवारजनों दिल्ली में G20 सम्मित के दौरान उस दृश्य को भला कौन भूल सकता है जब कई वर्ल्ड लीडर्स बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने एक साथ राजघाट पहुंचे
यह इस बात का एक बड़ा प्रमाण है कि दुनियाभर में बापू के विचार आज भी कितने प्रासांगिक है
मुझे इस बात की भी खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से सम्बंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है
केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोरशोर से जारी है
Indian स्वछता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है
आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं 1 अक्टूबर यानि रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है
आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता के जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं
आप अपनी गली आसपड़ोस पार्क नदी सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं और जहाँजहाँ अमृत सरोवर बने हैं वहाँ तो स्वच्छता अवश्य करनी है
स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्दांजलि होगी
मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि इस गाँधी जयंती के अवसर पर खादी का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर ख़रीदें
मेरे परिवारजनों हमारे देश में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है
आप सभी के घर में भी कुछ नया खरीदने की योजना बन रही होगी
कोई इस इंतजार में होगा कि नवरात्र के समय वो अपना शुभ काम शुरू करेगा
उमंग उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फोर लोकल का मंत्र भी जरुर याद रखें
जहां तक संभव हो आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मादे इन इंडिया सामान का ही उपहार दें
आपकी छोटी सी ख़ुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी ख़ुशी का कारण बनेगी
आप जो भारतीय सामान खरीदेंगे उसका सीधा फ़ायदा हमारे श्रमिकों कामगारों शिल्पकारों और अन्य विश्वकर्मा भाईबहनों को मिलेगा
आजकल तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं
आप स्थानीय चीजें खरीदेंगे तो स्टार्टअप्स के इन युवाओं को भी फ़ायदा होगा
मेरे प्यारे परिवारजनों मन की बात में बस आज इतना ही
अगली बार जब आपसे मन की बात में मिलूंगा तो नवरात्रि और दशहरा बीत चुके होंगे
त्योहारों के इस मौसम में आप भी पूरे उत्साह से हर पर्व मनाएँ आपके परिवार में खुशियां रहें मेरी यही कामना है
इन पर्वों की आपको बहुत सारी शुभकामनायें
आपसे फिर मुलाकात होगी और भी नए विषयों के साथ देशवासियों की नई सफलताओ के साथ
आप अपने संदेश मुझे ज़रूर भेजते रहिए अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें
मैं प्रतीक्षा करूँगा
बहुत बहुत धन्यवाद